यह फोटो एक मेंस वियर की शॉप का दिखाई दे रहा है।

इस दुकान का नाम डायमंड टिंबर एंड टाइल्स है।

अंदर पेड़ पौधे और बिजली के वायर के ट्रांसफॉर्मर दिखाई दे रहे हैं।

यह दुकान धार में है यहां पे शादी और पार्टी के आर्डर लिए जाते हैं।

इस दुकान का नाम अरुण उपहार ग्रह है जहां पर बंगाली मिठाईयां भी मिलती हैं।

जो कि गुरु कृपा रीलोकेशन कंपनी का है जो कंपनी पैकर्स एंड मूवर्स का काम करती है।

जिसमें अंदर ऊपर की तरफ काफी सारी लाइटिंग है नीचे टेबल पे एक आदमी चश्मा लगा के बैठा हुआ है।

दुकान का नाम सत्ताधार ट्रेडर्स है।

यहां फोटो एक होटल का दिखाई दे रहा है।

होटल का नाम श्याम पैलेस हैं जहां पर फैमिली रेस्टोरेंट जो फैमिली रेस्टोरेंट हैं।

शोपीस लकड़ी का दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ भी काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक ब्लैक कलर की जाली लगे हुई है चारो तरफ--

यह फोटो एक फैमिलीरेस्टोरेंट का है।

यह फोटो एक पेट्रोल पंप का दिखाई दे रहा है।

यहां फोटो एक किराना ट्रेडर्स की शॉप की है।

इस फोटो में एक छोटा सा बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है।

झरने के पीछे पहाड़ी पर काफी सारी--